और पुरुष दवाई और --

उसके पीछे टावर है।

ए.सी. नॉन ए.सी. रूम --

और चारो तरफ बहुत ही खूबसूरत पेड़-पौधा --

इंस्ट्रू मेंट का बुक मिलता है सामने --

बहुत बढ़िया-बढ़िया लगा हुआ है चार-पांच कुर्सी वहाँ लगा --